यह एक बैंक है जिसके अंदर बहुत से आदमी खड़े हुए हैं।

और कॉलेज के पास में एक सड़क है जिस पर कुछ बच्चो कुछ आदमी खड़े हैं।

और इसके पास में कुछ कंपनियां भी हैं जिसके अंदर बहुत सा सामान रखा हुआ है।

और पीछे दीवार पर दो बोर्ड भी लगे हुए हैं और बच्चों के हाथ में--

और इस दुकान के अंदर एक काउंटर भी रखा हुआ है।

यह एक क्लास रूम है जिसके अंदर बहोत सी बेचें रखी हुई है और बेचो के ऊपर कुछ बैग भी रखे हुए हैं और इसके अंदर कांच की खिड़की भी लगी हुई है।

यह एक पेट्रोल पंप है जिस पर कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

और इस मॉल में स्टील से बनी एक ग्रिल भी है।

और इस दुकान के बाहर कुछ बोर्ड भी लगे हुए है।

और इस दुकान के अंदर बहुत सा सामान रखा हुआ है और दुकान के बाहर स्टील की कुर्सीयां भी रखी हुई है।

यह एक कपड़ों की दुकान है इस दुकान के अंदर बहोत से कपड़े टंगे हुए हैं।

यह एक खेत है जिसके अंदर कुछ गेहूं बोए हुए हैं।

और इसकी दीवारों पर एक घड़ी भी लगी हुई है और इसकी छतों में कुछ लाइटें भी लगी हुई है।